इस दृश्य में काफी सारे लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

और नीचे लाइटिंग के जरिए स्टेशनरी वेलकम भी लिखा हुआ है।

इस चित्र में एक टॉय ट्रेन नजर आ रही हैं टॉय ट्रेन का रंग--

बहुत ही सुंदर दृश्य नजर आ--

दीवार के ऊपर एक बहुत ही बड़ा पोस्टर नज़र आ रहा है।

इसके अलावा लेफ्ट हैंड साईड में एक खुला हुआ गेट नजर आ रहा है उसी गेट के अंदर से एक आदमी साइकिल लेकर आ रहा--

यहां पर राइट साइड में कुछ पोड़िया भी नजर आ र--

वहीं उसने ब्लू कलर का मास्क भी लगाया हुआ है।

इस चित्र मे सामने सफेद रंग की बिल्डिंग नज़र आ रही है।

लेफ्ट हैंड साइड में एक एल_ई_डी भी नजर आ रही है वहीं टेबल के ऊपर एल_ई_डी का रिमोट भी नजर आ--

उसके साथ में एक टेबल एक कुर्सी नज़र आ रही है सामने हरे भरे पेड़ हैं।

इसके अलावा यहां पर ग्रिल भी नजर आ रही है बहोत ही सुंदर दृश्य है।

इस चित्र में एक लाल कलर की इमारत नजर आ रही है।

वाहन नज़र आ रहे हैं यहां पर पांच दो पहिए वाहन और एक चार पहिया वाहन--

इस दृश्य में मॉल दिखाई दे रहा है यह मॉल नहीं हवाई अड्डे करते की तस्वीर--

वहीं दूसरा पंखा काले रंग की दीवार पर लगा हुआ है यहां पर एक छोटी घड़ी भी नजर आ रही है।

वही साथ में कुछ दो पहिया वाहन भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं।